इस तस्वीर में कुर्सी लगा हुआ नजर आ रहा है और एक लाल कलर का पढ़ना भी लगा हुआ है।

बगल में एक छोटा सा केबिन है केबिनन के बाहर एक हरा कलर का पिलर है।

इसमें एक कोचिंग भी खुला हुआ है मेक फ्यूचर कोचिंग सेंटर के नाम से।

इस तस्वीर में बहुत सारे बच्चे नजर आ ड़हे हैं जो कि सभी पर रहे हैं कुछ ना कुछ कर रहे हैं।

और बहुत अच्छा तरीका से सजाया भी गया हुआ है इसके बाहर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है।

इस तस्वीर में एन_जी_एम पब्लिक स्कूल का बस दो नजर आ रहा हैं।

और पहाड़ के अगल बगल बहुत सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं जो कि बहुत हरा भरा है।

यह तस्वीर किसी कंप्यूटर दुकान की है जिसका नाम मन्या कंप्यूटर्स है।

घर उजले कलर का है घर के बाहर उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का एक बोर्ड लगा हुआ है जोकि ग्राहक सेवा केंद्र है।

इस तस्वीर में स्टेट बैंक का ए_टी_एम दिख रहा है ए_टी_एम के अंदर एक आदमी पैसा निकाल रहा है।

और ए_ टी_ एम के बाहर तो तीन आदमी खड़ा है जोकि पैसे निकालने के लिए लाइन में लगा हुआ है।

केक के अगल बगल बैलून भी लगाया गया है इसमें बहुत सारा आदमी भी नजर आ रहा है एक बच्चा एक गोद में है।

पानी में है पानी हरा कलर का दिख रहा है।

फूल से बहुत अच्छा सजाया गया है पीला कलर का पंडाल है।

एक बोरा नीचे गिरा हुआ है दुकान के बाहर बहुत सारा कुर्सी लगा हुआ है एक गाड़ी लगा हुआ है।